राशन की दुकान का यह फोटो लग रहा है यहां पे बी_पी_एल कार्ड बिक रहा है।

सेवन सिक्स वन फाइव नाइन ज़ीरो थ्री वन नाइन वन उधार मांग कर शर्मिंदा --

पास में एक अंब्रेला येलो कलर का लगा है और कुछ स्लाइडिंग्स भी लगी हुई है रंग बिरंगी।

बेड शीट कुशन कवर पिलो कवर सभी तरह के कपड़े अच्छी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं।

और कस्टमर मछलियां ले रहे हैं लेडिस जेंट्स सभी तरह के हैं पीछे टेंट सेट --

सेंट विनस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर का ये फ़ोटो है।

जिम ओपनिंग की ये फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे जिनके इक्विपमेंट पड़े हैं और काफी मात्रा में लोग यहां पर --

कुछ दुकानदार जो पान लगा रहे हैं दुकान की सजावट भी अच्छी है और नाई की दुकान है यह सैलून है मेन सैलून है।

एक एल_इ_डी टी_वी वॉल पर है पीछे एक वॉलपेपर --

क्रिकेट बैट बॉल पैड स्टंप्स सभी तरह का आइटम मिलता--

बुद्ध भगवान की फोटो अंबेडकर साहब की फोटो के सामने कुछ लोग मीटिंग कर रहे है।

आ सामने व्हाइट बोर्ड पर टीचर उन्हे पढ़ा रहे अच्छी लाइटिंग कर रखी है।

कल्चरल प्रोग्राम की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर एक डांस प्रतियोगी अपने डांस का कौशन दिखाते हुए --

रॉयल एनफील्डस बाइक के शोरूम की फोटो जहां पर रॉयल एनफील्ड बाइक्स काफी मात्रा में --